और यहां पर फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं शाम का हमको ये टाइम लग रहा है पीछे एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक बस नजर आ रही है जो कि नीले रंग की है और उस बस पे लिखा हुआ है जय मां भवा--

आसपास दो ऑटो है ऑटो पे लिखा है अतुल और एक लड़का भी खड़ा है जो की बैग टांग के खड़ा है।

इस फोटो में एक लड़का है जिसने शर्ट पहनी है रेड कलर की हाथ में घड़ी है एक जींस पहनी है उसने ब्लू कलर की।

दुकान है जिसके अंदर एक नीले रंग का ड्रम है ए--

का समय है अभी और सूरज भी है।

साइड में भी बच्चों के कपड़े टांगे हैं और गूगल पे का क्यू_आर कोड है साथ में पेटीएम सॉरी फोनपे का भी क्यू_आर कोड दिख रहा है।

नीचे हमें यहां पर कप नजर आ रहे हैं।

और यहां पर इन्होंने मछलियां रखी हुई है। एक खंभा है जिसके ऊपर फोन पे का और गूगल पे का क्यू_आर कोड --